ये फोटो इवनिंग टाइम की है जिसमे बहुत सारे गमले दिखाई दे रही हैं और कुछ दिखाई दे रहा है।

--आगे की साइड में सब कुर्सीयो पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं यह कुछ स्पीच देने का काम किया जा रहा--

इस फोटो में दो लड़कों के सीन उस पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं पीछे गणेश जी की फोटो भी दिखाई दे रही है जो की फूलों से सजी हुई दिखाई दे रही है।

तथा इसमे से पेंट को निकाल के आप उसका पेपर निकाल ने का काम किया जा रहा है। और इसमे दो जैंट्स दिखाई दे रहे है। ये--

इनके आगे की साइड बहोत सारे पेड़ भी दिखाई दे रहे है जो की नदी या तालाब को घेरे हए है।

यह फोटो भी किसी बस स्टॉप का है जहाँ पर बहुत सारी गर्ल्स लोग बहोत सारी लेडिस और जेंट्स दिखाई दे रहे हैं कुछ बस में चढ़ते हुए कुछ बस से उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं।

फोटो किसी शादी या रिसेप्शन की है जिसमें की एक बहुत बड़ा सा गेट बनाया गया है जिसके ब्लू या रेडीमेड फूलों से सजाया गया है और बहुत सारे पर्दे भी लगाए गए हैं।

यह फोटो फेडरल बैंक के ए_टी_एम की है जिसके बाहर से एक लड़का इसकी फोटो लेते हुए दिखाई दे रहा है।

यह फोटो यूनियन बैंक की है जिसके पास मे यूनियन बैंक का ए_टी_एम भी दिखाई दे रहा है इसके बाहर बहुत सारी गाड़िया भी खड़ी हुई दिखाई दे रही है

यूनियन बैंक और ए_टी_एम दोनो ओपन दिखयी दे रहे है उसके पास मे ही एक बडा सा चार्ट भी दिखाई दे रहा--